इसमें बहोत बड़ी मशीन रखी हुई है और यहां बहोत सारी लाइटें जल रही है।

फर्श पर हरा मैट बिछाया गया हैं दीवारों पर कई पेंटिंग भी--

ये तस्वीर एक सड़क की है।

दीवारों पर कपड़े टंगे हुए--

और समुंदर के किनारे खड़ी हुई हैं।

एक कार्यक्रम की है यहां पर स्टेज लगाया हुआ है।

कई पेड़ भी दिखाई दे रहे--

आलुओं की है ये आलू बहोत बड़े और मिट्टी के हैं।

यहां पर बोर्ड लगा हुआ है जिसपर एम_एस प्रेंट्स ट्रेडर्स लिखा हुआ--